होटल के अंदर जाने का रास्ता दिखाया गया है होटल के ऊपर एक चार्ट लगा हुआ है जिस पर श्री राय होटल एवं रेस्टोरेंट --

इस इमेज में लोहे की एक मशीन दिखाई गई है यह परकनी गोल - गोल टाईप से बनी हुई है पंखे की आकृति की है।

कार के पीछे जो घर बना दिख रहा है उसके ऊपर वाणिज्य कार उपयुक्त लिखा हुआ है।

इस इमेज में एक नदी को दिखाया गया है नदी में स्नान करते कुछ तो लोग दिखाये गये हैं और कुछ लोग--

इसके बाजू में एक रेड टी-शर्ट में एक बॉय --

इस इमेज में एक नदी की इमेज दिखाई गई है जिसमें बहुत सारे लेडिस और जेंट्स एक साथ--